raster data styling in qgis पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सतत raster को स्टाइल करना
raster calculator में एक्स्प्रेशन लिखना
raster प्रोपर्टिज के बारे में
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
qgis वर्जन 218
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको qgis interface से परिचित होना चाहिए
पूर्वपेक्षित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं
प्लेयर के नीचे स्थित code files लिंक में दिए गए फोल्डर को डाउनलोड़ करें
डाउनलोड़ की गई zip फाइल के कंटेंट्स को एक्स्ट्रैक्ट करें और इसे फोल्डर में सेव करें
मेरा code files फोल्डर यहां है
फोल्डर को खोलने के लिए डबलक्लिक करें
इस फोल्डर में आप वर्ष 2000 और 1990 हेतु पूर्ण विश्व के लिए population density grid files पायेंगे
यहां asc file extension के साथ ascii फॉर्मेट में दो फाइल्स हैं
इन फाइल्स को qgis में खोलें
code files फोल्डर को बंद करें
यहां मैंने qgis इंटरफेस खोला है layer मैन्यू पर क्लिक करें
ड्रापडाउन से add layer चुनें
सबमैन्यू से add raster layer चुनें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है मैं desktop में code file फोल्डर पर जाऊंगी
asc file extension के साथ दो फाइल्स चुनें
ctrl की को दबाएं और पकड़कर रखें दोनों फाइल्स पर क्लिक करें
open button पर click करें
coordinate reference system selector खुलता है
कुछ सेटिंग्स में crs स्वतः ही चयनित होगा
ऐसी स्थिति में यह विंडो नहीं खुल सकती है
यदि coordinate reference system selector नहीं खुलता है तो इस स्टेप को छोड़ दें और अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ें
यहां मैं सूची से wgs 84 epsg 4326 चुनूंगी
ok button पर click करें
क्योंकि एक ही समय पर हम समान दो लेयर्स जोड़ रहे हैं coordinate reference system selector एक बार और यहां खुलता है
फिर से wgs 84 epsg 4326 चुनें
ok button पर click करें
कैनवास पर आप grayscale में प्रस्तुत विश्व का मानचित्र देखेंगे
हल्के रंग का pixels अधिकतम जनसंख्या और गहरे रंग का pixels निम्नतम जनसंख्या दर्शाता है
layers panel में आप दोनों लोड़ raster layers देखेंगे
raster में प्रत्येक pixel में उस ग्रिड के लिए जनसंख्या घनत्व का मान होता है
pixel का मान देखने के लिए टूल बार के ऊपरी राइटकोने पर identify features टूल पर क्लिक करें
मानचित्र को जूमइन करने के लिए माउस के व्हील का उपयोग करें
raster मानचित्र पर कहीं भी क्लिक करें
pixel मान identify results पैनल में दिखाई देगा
ध्यान दें कि हल्के रंग में pixel उच्चतम मान और गहरे रंग के pixel में निम्नतम मान होता है
identify results पैनल बंद करें
मानचित्र को जूम आउट करें pan map टूल पर क्लिक करें और कैनवास पर मानचित्र को व्यवस्थित करें
जनसंख्या घनत्व पैटर्न को उपयुक्त प्रकार की स्टाइलिंग के साथ बेहतर रूप से देखा जा सकता है
layers panel में पहली लेयर पर राइटक्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से properties ऑप्शन चुनें
layer properties डायलॉग बॉक्स खुलता है
डायलॉग बॉक्स में style टैब चुनें
band rendering सेक्शन में render type को singleband pseudocolor में बदलें
interpolation को linear करें
color ड्रापडाउन में spectral चुनें
नीचे scroll करें
mode को continuous चुनें
आप देखेंगे कि 5 नए रंग मान बन गए हैं
apply बटन पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स के निचले दाएं कोने में ok बटन पर क्लिक करें
वापस qgis कैनवस में आप वर्णक्रमीय रंग प्रतिपादन के 5 वर्गों में प्रदर्शित raster मानचित्र देखेंगे
जैसे 1 layer में दिखाया गया है उन्ही स्टेप्स का अनुकरण करें और 2 layer के लिए raster style बदलें
हमारे विश्लेषण के लिए हम 1990 और 2000 के बीच के सबसे बड़े जनसंख्या परिवर्तन वाले क्षेत्रों को खोजना चाहेंगे
इसके लिए हमें दोनों layers में प्रत्येक ग्रिड के pixel मान के मध्य अंतर ज्ञात करने की आवश्यकता है
इन गणनाओं के लिए हम raster calculator tool का उपयोग करेंगे
मैन्यू बार में raster मैन्यू पर क्लिक करें ड्रापडाउन से raster calculator चुनें
raster calculator डायलॉग बॉक्स खुलता है
raster bands चयन में बैंड्स के नाम प्रदर्शित होते हैं
क्योंकि हमारे प्रत्येक rasters में 1 बैंड है आप प्रति raster 1 प्रविष्टि देखेंगे
raster calculator raster pixels पर गणितीय कार्य लागू कर सकता है
इस मामले में हम वर्ष 2000 के जनसंख्या घनत्व से वर्ष 1990 के जनसंख्या घनत्व को घटाने के लिए एक सरल सूत्र दर्ज करना चाहते हैं
raster bands सेक्शन में वर्ष 2000 के लिए raster layer पर डबलक्लिक करके layer चुनें
एक्स्प्रेशन अब raster calculator expression सेक्शन में जुड़ जाती है
operators सेक्शन से subtraction operator बटन पर क्लिक करें
फिर से raster bands सेक्शन से वर्ष 1990 के लिए raster layer पर डबलक्लिक करें
अब गणना के लिए सूत्र raster calculator expression सेक्शन में प्रदर्शित होता है
result layer सेक्शन में आप output layer बॉक्स देखेंगे
बॉक्स में अपने output layer का नाम popchangetif टाइप करें
output format ड्रापडाउन में geo tiff चुनें
output crs ऑप्शन स्वतः चयनित होता है इसे ऐसे ही रहने दें
add result to project के आगे बॉक्स को चेक करें
डायलॉग बॉक्स के निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
आपको layers panel में नई layer लोड़ दिखेगी
तीसरी लेयर के लिए मानचित्र देखने के लिए layers panel में पॉप2000 और पॉप1990 layers के लिए चेक बॉक्स को अनचेक करें
हम लेयर की स्टाइल बदलकर अधिक सूचनात्मक मानचित्र बना सकते हैं
popchange layer पर राइटक्लिक करें कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से properties ऑप्शन चुनें
layer properties डायलॉग बॉक्स खुलता है
हम layer को इस तरह स्टाइल करना चाहते हैं कि कुछ रैंज में pixel मान समान रंग के होते हैं
metadata टैब पर क्लिक करेंproperties ऑप्शन पर नीचे स्क्रोल करें
maximum और minimum मान नोट करें
अधिकतम मान 6000 के करीब है
न्यूनतम मान2000 से थोड़ा अधिक है
style टैब पर जाएं band rendering में render type के रूप में singleband pseudocolor चुनें
interpolation को discrete सेट करें
नीचे स्क्रोल करें add values manually बटन पर जाएं
यह classify बटन के आगे स्थित हरा प्लस सिंबल बटन है
4 यूनिक classes बनाने के लिए add values manually बटन को 4 बार क्लिक करें
यह मान मध्य पैनल में दिखाई देता है
यहां हमें प्रत्येक रो में मानों को बदलना पड़ेगा
दर्ज किए गए मान से कम जनसंख्या मान की उस प्रविष्टि को रंग दिया जाएगा
मान को बदलने के लिए values कॉलम में पहली प्रविष्टि पर डबलक्लिक करें
हमने देखा कि हमारे metadata विश्लेषण में न्यूनतम मान 2000 से थोड़ा अधिक है पहली प्रविष्टि में 2000 टाइप करें
रंग के बॉक्स पर डबलक्लिक करें और रंग बदलें
पहली रो में label कॉलम पर डबलक्लिक करें no data values टाइप करें
इसी तरह यहां दिखाए अनुसार सभी मान और लेबल भरें
negative बदलाव को निरूपित करने के लिए दूसरी रो में 10
neutral निरूपित करने के लिए तीसरी रो में 10
आखिर में 6000 positive बदलाव निरूपित करने के लिए
क्योंकि metadata विश्लेषण से हमारा अधिकतम मान 6000 के करीब है
विंडो के निचले दाएंकोने में apply बटन और फिर ok बटन पर क्लिक करें
अब कैनवास पर आपको जनसंख्या डेटा का अधिक प्रभावशाली दृश्य दिखाई देगा
यहां आप स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों को देख सकते हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन देखा गया है
नीले रंग में रंगे हुए क्षेत्र धनात्मक जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाते हैं
हरे रंग के क्षेत्र ऋणात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं
गुलाबी क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या परिवर्तन नहीं देखा गया है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
नियतकार्य के रूप में
संकेत: raster calculator का उपयोग करें 0 से कम जनसंख्या परिवर्तन का चयन करने के लिए एक एक्स्प्रेशन लिखें
आपका पूर्ण नियतकार्य यहां दिखाए गए अनुसार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी इस फोरम पर पोस्ट करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद